और उ उसमे दो चमच भी हैं और चाय के पाउच भी रखे हुए हैं।

ये किसी घर का चित्र है। जो की छत पड़ने के लिए इसमे शटरिंग लगाई जा रही है।

ये फूल की दुकान की तस्वीर है। जहाँ पे तरह-तरह की मालाए मिलती हैं और इन्हे अपनी गाड़ियों या किसी के विवाह समारोह में इस्तमाल किया जाता है।

यह तस्वीर किसी लाइब्रेरी की है जिसमे तीन लाइब्रेरी बूके वाले रखे हुए है और इसमें स्टूडेंट नजर नहीं आ रहे है।

लगे हुए है जो कि बहुत ही स्वाथ्य के लिए हमारी असरदार करते है।